इस चित्र में मंदिर का द्वार दिखाई दे रहा हैं एक मूर्ति दिखाई दे रही हैं ऊपर उसके पीछे हरा घना पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र मे सफेद काले पत्थरों से बनी एक आँगन जैसा दिखाई दे रहा है।